डैम का चार पांच छोर छन जख बिटिन पानी छोरदन यू अर एंच बिटिन पुल्ल भी छा जख बिटिन क्रॉस होंदी गाड़ी गुड़ी या इंसान भी जै सकदु पिछाड़ी बिटिन और चीज़ भी दिखेणी जन तुम ता डाला दिखेणा और सुख्यां सुख्यां।

यू जू छा एक फ्लोर चा म दिखेनु जा टाइल टाइल अन लगी अ टाइलो की बहोत सुंदर द्वारा करयो औ कु काम छ करयु इ पिछारी बिटिन मे और सफ़ेद रंग कि स्लैब छे यही पे दिखेनी और ग्रील छ न दिखेणी और ये पर औऱ चारा ख़ासा कुछ नई ।